लाइट्स भी लगे हुए हैं इसमें सी_सी_टी_वी कैमरे भी हैं।

बहुत सारे पत्थल दिख रहे हैंबड़े बड़े--

लड़का गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक लड़का बाहर में बैठ के कुछ कर रहा है इसके माथे पे टोपी है।

बहोत सारे लाइटे लगी है दुकान में--

इस चित्र से यह पता चलता है कि यहां पे कोई कंपटीशन हो रहा है।

बहुत सारे लेडीस हैं।

बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिख रहे हैं।

इस चित्र से यह प्रतीत हो रहा है कि यह एक हॉस्पिटल है।

में बारिश भी हो रहा है बहुत सारे बाइकें खड़ी हुई ब्लैक रेड

खंभा भी लगा हुआ है बहुत सारे तारें दिख रही हैं एक जेंट्स बैठा हुआ हैं चेयर पे उसके बगल में एक पंखा भी है।

यह एक हाइवे है जिसमें एक रेड कलर की फोर वीलर है। जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ।

बहुत सारे बड़े बड़े खंबे दिख रहे हैं।

इस चित्र से यह पता चलता है कि यह एक अच्छा केक है।